और अभी भी तीन -चार लोग कर रहै है बैठे --

अइ रूट सीधा से पैदल आने जाने वाले गाड़ी से जा भी सकते है या कोई दिकत नहीं है।

एक पॉइंट डीजल यहाँ पर मिल जाता है कोई दिकत तो नहीं होता है नाईट को भी --

यहाँ पर पानी गिरता है झरना हैं यहाँ पर लोग के नजारे देखने के लिए भी आते है छोटा-छोटा पत्थर बड़ा-बड़ा पत्थर दिख रहा है।

ये शाद्दी पार्टी के लिए बनाया जाता है डेकोरेशनस है बफर बफर सिस्टम के लिये --

इ भाई साहब लोग गए है शादी पार्टी में अटेंड करने के लिए--

ग्यारह ग्यारह के खिलाड़ी उतारते है यहाँ पर दो अंपायर रहते है यहाँ पर टेंट भी लगा हुआ है लोहै का --

और शाम - शाम की बात हैं करीब साढ़े छ : सात बजे के बीच में लाइट मन जल रहा हैं काफी सारे अच्छे लग रहे है नज़ारे।

बहुत सामान मिलता है यहाँ पर किराना स्टोर पे दाल चावंल शक़्कर साबुन तेल इत्यादि कोलगेट ब्रश सर्फ़ सर्फ साबुन --

और चांवल भी मिलता है बहुत कुछ इत्यादि --

कार्यालय नगर पंचायत बस्तर का है ये पंचायत भवन है यहाँ पर सरपंच सचिव वार्ड पंच सभी आते है यहाँ पर --